ये एक फूल रखे है एक डब्बे में हरे कलर सफेद लाल संतरा भी फूल रखे हुए है। डब्बे में बंधे हुए रखे है। बहुत बढियां अच्छे लग रहे हैं इसमे एक कावद भी लगे हुए धरे हैं।

का है बढ़िया सी ये डिजाईन है अंदर ही कछु नहीं है कुछ रखा हुआ है कपड़े भी रखा हुआ है। बहोत अच्छा लग रहा है ये लकड़ी का एक बना हुआ है एक एक हैप्पी नू अर कह कहने वाला है। उसमें एक करल का कपड़े भी रखें है।

एक मंदिर है बहोत बड़ा एक झंडी भी गड़ी है केला भी पड़ा हुआ है कटोरी भी रखा है दीया भी रखा है रूपया भी पड़ा है बताशे भी चढ़े हुए है पेड़ पौधे है।